इस स्थान पर एक बहुत बड़ा सीढ़ी बनाया --

और इसके साथ ही एक टीवी भी लगाया गया है जिसमे फिलीम चल रही है।

आदमी दिखाई दे रहे हैं और बाहर भी दो अस्कूटर लिए खड़े हैं |

यहाँ जिम करने का मशीन रखा गया है |